अपने दोस्तों के साथ परिवारों के साथ शाम को घूमने जाते हैं।

यहां पे बहुत बच्चे कराटे सीखने आते हैं|